इस फोटो में मुझे बरफ दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे दो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक ड्रम दिखाई --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

इस फोटो में इन्जिनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र का बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे स्कैनर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लाइटें दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे गाय दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई--

इस फोटो में मुझे नमकीन दिखाई दे रही है।